यहां पे एक वार्ड नजर आ रहा है जो यहां पे सरकारी डॉक्टर की तरह सरकारी हॉस्पिटल यहां पे लोग बैठे हुए हैं।

फैन दूर नज़र आ रही है एक बड़ा सा यहाँ पे दरवाजा दिखाई दे रहा है और फर्शी है वाइट कलर की नीचे जग रखा हुआ है और चपला है जो पेंट --

और एक बड़ा गेट खुला है और यहां पे छोटा गेट बंद है और यहां पे अंदर बिल्डिंग है जो बच्चों के लिए--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

जो यहां पर काम कर रहे हैं लैपटॉप में जो अपना काम में वो एक पीछे से यहां लड़का बैठा हुआ है।

चीज है यहां पे यहां पे इंजेक्शन है यहां पे पी_आर_पी करने का प्रोसेस दिखाई दे रहा है यहां पे एक मशीन है।

और यहाँ पे भी जो पानी का चालू है दूसरी तरफ भी छत नजर आ रही है जहाँ पे छत में भी पानी आ रहा है और यहाँ पे पानी नीला --

यहां पे बैठके गद्दी पे नीचे बहोत सारे लोग हैं लड़कियां औरते--

फैन भी चल रहा है यहाँ पे कंबा जो कमबे पर यहाँ पे कैरेंडर रखा हुआ है जो --

पीला कलर का लटकाया हुआ है लेट जालू और यहाँ पे दीपचा यहाँ पे लोग हैं जो काम करने वाले एक दूसरे को डिस्कस --

आज वकत अपनी अपनी थैली लेकर जा के पांदर गोदाम में रख रहे हैं गोदाम बहुत बड़ा है --

और लाइटिंग है यहां पर रास्ता भी है जाने के लिए झाड़ है यहां पे आसमान में--

यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग जो हिंदुओं के हैं यहाँ पे औरतें भी है गर्ल्स भी है बॉयज भी है और जेन्स भी हैं।

यहाँ पे दुकान है और यहाँ पे दुकान में बैलून रखे हुए है जो बैलून का कलर है ग्रीन है ऑरेंज है जो दो है यहाँ पे।

मापने का है और अंदर अंधेरा है नजर नहीं आ रहा।

यहाँ पे प्राइस है वो सारा लिखा हुआ है यहाँ पे बहोत बड़े-बड़े हैं यहाँ पे।

फूलों से अच्छी लाल कलर की नीचे लाइटिंग रखी हुई है और यहां पर जाने के लिए रेड कलर के मैट है ग्रीन कलर --

यहाँ पे स्टूडेंट है जो यहाँ पे नीले कलर का ड्रेस पहने है और काले कलर की पेंट है।

झाड़ है हरे भरे लगे हुए हैं और यहां पे कुछ सूखे हुए हैं पत्ते के लिए भी हैं।

और यहाँ पे आजू-बाजू में झाड़ जो बड़े-बड़े झाड़ भी हैं और यहाँ पे हर एक बिल्डिंग में अलग-अलग किस्म के वो कुछ पर्पल में लाइटिंग लगाए हुएं हैं और साइड में भी झाड़ हैं।

सुंदर है और यहाँ पे आसमान है नीला कलर और वायरिंग है जो करंट वायर सप्लाई है --

यहां पर आदमी है जो यहां पे है झाड़ हैं छोटे यहां भी है टमाटर की दिखाई रहें जिसको फूल लगे हैं येलो कलर --

निरमा साबुन है निरमा है कपड़ों का साबुन है यहां पे कोलगेट है दस वाला है यहां पे ब्रश है और यहां पे अचार के पॉकेट भी--